रात का समय है बच्चे ब्लू कलर के कुर्ते और वाइट कलर का पायजामा पहना हुई है बहोत लम्बी सरक --

मै देख पा रही हु की कुछ बकरियाँ खाना खा रहे है जो साधा कलर की कत्था कलर की है।

मै देख पा रही हूं एक बहोत बड़ा ग्राउंड है जो ब्राउन कलर का है एक बिल्डिंग बन रही है जो अन्कम्प्लीट है।

कुछ पावडर नजर आ रही है कुछ सरसो तेल के बोतल नजर आ रहे है कुछ नारियल तेल के बोतल नजर आ रहे है बहोत सारे दुकान में सामान भरे हुए दिखाई दे रहे है।

मैं सामने देख पा रही हूँ एक पेट्रोल पंप है जहाँ कुछ आदमी बाइक रोक के पेट्रोल भरवा रहे है।

सामने में देख पा रही हूँ की क्रिकेट मैच हो रही है जिसमे लड़कियों का है एक लड़की बैटिंग कर रही है।

जिसमे बहु हो या जवान सभी को आवश्यक मतदान --

जिसमे मतदान का लिखा हुआ है वो सामने पिला कलर के बिल्डिंग है जिसमे ब्लैक कलर की तार लगी हुई हैं।